ये एक चाय वाला है यहां पे ये चाय बनाता है।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

ये एक मार्केट है यहां पे बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

ये एक दुकान है यहां पे बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

दिखाई दे रही है बहोत सारी लाइट बिजलीयां--

लेकिन यहां पे कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहा है।

बहोत सारी बाइके खड़ी हुई है कुछ आदमी नीचे दिखाई दे रहे है।

यहां पे एक घर है यहां पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं।

ऊ यहां पे दो चार दरवाजा दिखाई दे रहे हैं। एक भारत माता की फोटो दिखाई दे रही है।

यहां पे एक पहाड़ है बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक तालाब है बहोत सारे पत्थर है।

ये एक रेल्वे स्टेशन है। यहां पे बहुत सारे लोग ही थे। खंबे भी लगे हुए हैं। यहां पे सीढ़ियां बनी हुई है।

ये एक मंदिर है यहां पे बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं।

शाय होटल भी है यहां पे दरवाजा एक आदमी खड़ा हुआ--

यहां पे एक तालाब है दो चार नाव रखी हुइ है एक आदमी दिखाई दे रहा है बहोत सारे पेड़ पौधे लगी हुई है।

यहां पे रोड है यहां पे एक-दो बस दिखाई दे रही --

यहां पे बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे दरवाजे हैं।

यहां पे रोड है यहां पे बहोत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़ लगी हुई है।

बहोत सारे लोहे के खंभे दो तीन दिखाई दे रहे हैं। एक हेल्मेट रखा है।

दो चार चक्के रखे हुए हैं पोस्टर रखें हैं।